इस चित्र में मुझे एक टेबल दिख रहा है बड़ा सा लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

एक इंसान उसको पाइप से धो रहा है नीचे फर्श दिख रहा है ऊपर --

इस चित्र में मुझे बहोत सारे काम वाले लोग दिख रहे हैं।

घास दिख रही है बहोत सारे पेड़ दिख रहे है ऊपर आसमान दिख रहा है और ब्रिज पर एक लड़का खड़ा हुआ है।

एक नेचुरल्स लिखा हुआ बोर्ड दिख रहा है।

दो मंदिर नजर आ रहे हैं एक लाल है एक पीला हैं।

और सामने एक लाल कलर का गेट नजर आ रहा है ।

ठेला दिख रहा है जिस पर तरबूज रखे हुए हैं।

इस चित्र में मुझे एक लड़का दिख रहा है।

कार दिख रही है एक खंबा लगा हुआ है बहुत सारी लाइटें चमकती हुई नजर आ रही हैं।

साइड में बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है।

इस चित्र में मुझे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

ऊपर बड़े-बड़े अक्षर में रानी कमलापति स्टेशन लिखा हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक लड़का नजर आ रहा है।

इस चित्र में मुझे बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है।

झरने में से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है।

भट नजर आ रहा है पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत सारी कुर्सियां दिख रही हैं।

बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे नजर आ रही हैं बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

गेंदे के गजरे टंगे हुए है। बहोत सारे गजरे टंगे हुए है।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा सा--

बड़ी सी पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही है।

कैरम बोर्ड में बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं--